पहाड़ के पीछे भी पहाड़ है उनका कलर बादलों के वजह से धुंधुला सा दिखाई दे रहा है।

एक दो पहाड़ दिखाई दे रहे है एक पहाड़ पुरा पेड़ों से ढाका हुआ हैं।

इधर से डोरियाँ भी गई हैं पेड़ की एक टहनी भी दिखाई दे रही है एक केबल सी भी दिखाई दे रही है जंगल धुंधला सा लग रहा है पर पेड़ भी बहुत सारे गहरे भी लग रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा शोरूम है जिसपे डेनिम वर्ल्ड लिखा हुआ है और भी विज्ञापन छपे हुए है सामने कांच की दीवारें भी लगाई हुई है विराट कोहली का फोटो भी दो लगी हुई है।